पर और डार्क हरा से इसकी बाल्कनी की पट्टी दिखाई दे रही है।

जिसपे ठमके सर अकॅडमी लिखा हुआ है व्हाइट कलर का म्ह कल --

यहा पर हम एक बिल्डिंग देख रहे है जिसमे नीचे शॉप खुली हुई है शटर है दो तीन जिसमे सामग्री दिखाई दे रही है बोहोतसी --

यहाँ पर हमे एक ये एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे हरिभरी दिखाई दे रही है। हरियाली टाइप की है।

और चंद्रमा है पैर एक नीचे को है और माताराणी भी हा आशीर्वाद देते --